यह एक डाकघर के बाहर की तस्वीर नजर आ रही है।

यह एक बिल्डिंग है जहां पे एक पार्किंग एरिया नजर आ रहा है --

यह फ्रेश एन फ्रेश द बेकरी केक शॉप है जिसका पिक्चर रात के समय बाहर से लिया गया है।

यह एक स्टेज का चित्र नजर आ रहा है जो शादी के लिए अह सजाया गया है।

बाहर की तरफ दो टेबल रखे हैं जो काले रंग के कपड़े से ढका हुआ है।

यहां पे दो तीन बड़े बड़े मशीन हैं।

इस कार की का टायर भी निकाला हुआ है।

तो एंट्रेंस के दोनों साइड पे गुलाबी लाल और सफेद रंग के फूलों से सजाया गया है।

यह एक पार्किंग एरिया की तस्वीर है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां लाइन से खड़ी है।

रास्ते के एक साइड पे सफेद और नारंगी रंग का मंदिर नजर आ रहा है।

यह एक नृत्य प्रस्तुति नजर आ रही है जिसे लोग टेंट में बैठकर निहार रहे हैं।

आगे की तरफ बहोत सारे हरे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और कुछ छोटे छोटे से घर भी नजर आ रहे --

चार बड़े स्पीकर और आठ छोटे स्पीकर हैं।

यह किसी चिकित्सालय का रिसेप्शन नजर आ रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर यूटिलिटी एरिया नीले रंग से लिखा हुआ है।

ऊपर पद्मा क्लिनिक लिखा है अंग्रेजी में सफेद रंग से।

स्टेज के ऊपर लाल कारपेट बिछाया गया है।

वो अपने सिर पर तपचीया उठाकर लेके जा रहे हैं।

दृश्य में एक मिक्सर नजर आ रहा है जिसमें सीमेंट और कपची मिक्स की जा रहीं हैं।

उसे निहारने कुछ लोग ऊपर खड़े हैं।